लाल कलर की ड्रेस भी टांगी हुई है कुछ आदमी घेर के खरे हुए है और अ कुछ पगडंडी टाइप बास लगे बंधे हुए है रस्सी से।

और बाजू में एक शॉप बनी हुई है।

यहाँ एक पूल टाइप लग रहा है जहाँ पे दो तीन कछुआ हेंगे और पीछे में कुछ पेड़ लगे हुए है जाली लगी हुई है साइड से और पूल में कुछ पट्टियाँ टाइप डला हुआ है।

यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं जो की प्लेट्स में रखी हुई है जिन का कलर ब्लैक और काई जैसा कलर का है ये एक आदमी उसको पकडे हुए है और जेब में हाथ डाल के खड़ा हुआ है।

कुछ बल्प जल रहा है और टेबल भी रखी हुई है और दूर में कुछ लटका हुआ सा लग रहा है और अ अ काले कलर की कुर्सी लग रही है।

यहां कुछ पेड़ भी दिख रहे है नीचे में भी पेड़ है पत्थर जो हैब्राउन से कलर के दिख रहे है।

ये स्पीज दे रहा है जिसके सामने माइक रखा है हाथ में कुछ पेजेस पकड़ा है और कोट पेहना और ब्लैक पैंट पेहना है।

इसमें कुछ आदमी लोग बैठे हुए है लाल कलर की कार्पेट डली हुई है और ग्रीन कलर की और कुछ स्टार्स लगे हुए हैं ऊपर में और कुछ पिंक कलर की झालर है कुछ ग्रीन कलर ---

यहाँ शायद कत्थक डांस चल रहा है जहाँ पे एक लेडी माला का हार पहने हुए है सर पे बेड़ी लगाये हुए है।

यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं किताब पढ़ रहा है पीछे में कुछ कुर्सी रखी हुई है अ सामने में कुछ रखी हुई है दो लोग शादी हो रही है शायद क्रिश्चियन में और ऊपर हमें परदे लगे हुए हैं।

यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम की बुके बिक रही है जो की जमी हुई है सामने और बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हुए --

शायद एक पूल दिख रहा है जहां पर कुछ लोग पानी पे उतरे हुए हैं नीचे जहा एक आदमी शायद डंडा पकड़े हुआ है।